ब्लैक फ्रॉक और बच्चों के बहुत सारे--

वहाँ पे किसी का बर्थडे मना रहे हैं।

जिनका कलर वाइट है और--

और वहां पर टेबल दो तीन भी है।

यह एक हॉस्पिटल है।

और वहाँ पे चार लोग हैं।

एक की कबू शर्ट का कलर ब्लू और दूसरे की स्काई ब्लू है और तीसरे की फ्रॉक का कलर ब्राउन है और ये--

है और दूसरे का कलर --

ये एक रूम है इसमें तीन सोफा है।

और इसमें दस पंद्रह लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

मस्जिद में जो फर्श है उसका कलर लाल और सफेद--

और एक के पैंट का कलर ब्लैक और दूसरे के पेंट का कलर क्रीम --

और यह एक कोको आटू के साथ फोटो उठा रहे हैं।

जो बारिश की वजह से बहोत खराब हुआ हैं।

बिल्कुल ब्लैक है और दूसरी का ग्रे है।

यह एक शॉप है।

कप लगाए हुए हैं और साइड में कुछ गप--

ले भी ग्रीन कलर के हैं और दूसरी साइड से भी बा--

बाउल जैग वगैरा भी है।

जिसमें बहुत सारे अच्छी सब्ज --

ये पेड़-पौधे लगाए गए हैं और वहाँ से चार गाड़ियां भी हैं जिनका कालर --

लाल नीला ब्लैक वाइट और पेंट का कलर ग्रीन ।

यह पहली ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है।

वाइट कलर है और दूसरे ब्लैक कलर साइड में है गेट का कलर --

यह रोड है जिस पे दो गाय हैं।

और वाइट है यह गाय आगे चल रही है और इनके पीछे एक इंसान भी है जिनके कपड़ू का कलर --

और बोर्ड के साइड में उस--

ब्राउन कलर का लगा के है और एक गेट भी है।

ये एक गार्डन है जो बहुत अच्छे से--

सजाया गया है और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स हैं।

पिंक है और ये किसी गोल में खेल रहे हैं और ये लाइन में वेट कर रहे हैं।

रूम है जहाँ पे सोफा--

बिल्डिंग्स भी लगाई गई है।